इस इमेज में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं यहां पर फिसल पट्टी भी है एक आदमी यहां पर --

यहां पर वॉशरूम भी बनी हुई दिखाई दे रहे हैं इसकी दीवार पर डिजाइन बनी हुई दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे है यहां पर बहोत सारे ई-रिक्शा दिखाई दे रही है उनमे कुछ लोग बैठे हुए कुछ लोग बाहर खड़े हुए है।

सुंदर सी प्रतिमा दिखाई दे रही इसके बाद--

पेड़ भी नजर आ रहे हैं यहां पर कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।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

इस इमेज में एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है इसके पास कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे एक व्यक्ति पत्थर पर बैठा हुआ है यहां पर बोतलें --

पेड़-पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह इमेज एक मस्जिद की है यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कुछ व्यक्ति नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर पर शिखर बना हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं यहां पर डेकोरेशन भी किया हुआ बाहर बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

कुछ बाइक और एक स्कूटी दिखाई दे रही है एक स्कूटी के पास एक व्यक्ति भी नज़र आ रहा है यहां पर एक कूलर भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में बीच में एक और सर्कल बना हुआ है यहां पर एक फाउंटेंन लगा हुआ है जहां पर पानी --

गमलों में पेड़ पौधे लगे हुए नज़र आ रहे यहां पर एक औरत भी दिखाई दे रही है जो पर्स लेकर जा रही है।

यह इमेज एक फिश शॉप की है यहां पर बहुत सारी फिश दिखाई दे रही है एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है दुकान में।

यहां पर कुछ व्यक्ति एरोप्लेन में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ एरोप्लेन के पास नजर आ रहे हैं यहां पर --